बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं| बहुत सारी दुकानें नजर आ रही हैं और यहां कुछ दुकानें बंद भी दिखाई दे रही हैं| यहां कुछ लिखा हुआ सा दिखाई दे रहा है|

यहाँ मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है| शॉप में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रही है और यहाँ सीढ़ियां दिखाई दे रही है जाते हुए और यहाँ मोटरसाइकिल नज़र आ रही है।

बड़ी सी दिखाई दे रही है और कुछ यहाँ कम वायर लगी हुए दिखाई दे रही है और मोटरसाइकिल साइकिल दिखाई दे रहे है| कुछ व्यक्ति नजर आ रहे है।

मुझे फ्लेट दिखाई दे रहा है खाली फ्लेट दिखाई दे रहा है यहाँ मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही है| वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

व्यक्ति नजर आ रहे है| मुझे आग जैसे कुछ दिख रहा है फोटो लगी हुई दिखाई दे रही है | यहाँ गेट नजर आ--

ऑफिस दिखाई दे रहा है एक हॉल दिखाई दे रहा है| हॉल में मुझे बहुत सारी यहाँ बहुत सारी चेयर नजर आ रही है।

एक स्‍टेज नजर आ रहा है यहाँ पे यहाँ पास एक फोटो लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहा कुछ मशीने नजर आ रही है पिलो दिखाई दे रही है और यहाँ मुझे कुछ गोला लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहॉ कुछ कूलर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और यह विंडो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और--